जोकि एक शोरूम बना है जिस पर येलो कलर से जुगल संस लिखा हुआ है।

एक रेड कलर का बैग --

इंडिया का लै पकड़ा हुआ है।